क्लब के नीचे ब्राउन कलर की दीवार है।

पीछे एच_पी पेट्रोल पम्प का बोर्ड लगा हुआ है।

सड़क के किनारे एक ऑटो खड़ा हुआ है।

यहाँ पर सामने की तरफ एक स्लाइड दिख रही है ।

यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है।

दीवारों पर अलग-अलग तरह के डिजाइंस बने हुए हैं।

लड़की ने रेड कलर की साड़ी और बहुत सारी ज्यूलरी पहनी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स और लाइट दिखाई दे रहे हैं।

ये एक ट्रक में फिट है जो एक घर के बाहर खड़ा हुआ है।

चित्र एक पंजाबी ढाबे का है।

समिति की एक बिल्डिंग बनी हुई है।

दीवारों पर पीला रंग पुता हुआ है।

उनकी मुंह पे मास्क लगा हुआ है।

पीछे कुछ फोटोज़ भी लगे हुए हैं।

बेड पर ब्लैक कलर का बिस्तर बिछा हुआ है।

एक लड़के ने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है।